कलर में से दिखाई दे रहा है जिस पर वाइट प्रिंट में श्री विष्णवे नम: कुछ लिखा है।

और पीछे की ओर एक दीवाल दिखाई दे रही है। दीवाल के ऊपर खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और ये जो दीवार है वो वॉइलेट कलर की दिखाई दे रही है। पीछे की ओर से --

आगे की और एक अ पोल दिखाई दे रहा है जिस पर बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और रेड कलर का कॉरपेट .

अ यहां हमे एक रोड दिखाई दे रही है जिस पर एक आदमी व्हाइट शर्ट पहन के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आगे की और देख रहा है और कुछ बायसाइकल्स दिखाई दे रही है।

वो आगे की ओर एक अ ठेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है छोटा-सा और कुछ बाइक्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है और साइकिल्स दिखाई दे रही है बहुत सारी |

यहाँ हमें एक अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है आगे की ओर एक ऐसे लोहे जैसा गेट दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर मैचर --

यहाँ हमे एक बुक सेंटर दिखाई दे रहा ह जिस पर ऊपर की ओर ऑरेंज कलर में ओल्ड बुक सेंटर लिखा गया है अंदर की ओर हमें बहुत सारी --

मम अ वाइट और पर्पल कलर में से एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की और दो-तीन व्हाइट बल्ब दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे इन्स्टरुमेंटल्स दिखाई दे रहे हैं।

का बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो येलो कलर की शर्ट पहना है नीचे की ओर --

और गेट दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर की बोहोत सारी ऐसी किनारे दिखाई हुए दे रहे हैं। आगे की ओर अ आगे की ओर बोहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक एच.डी.एफ.सी. बैंक करके --

बरगद का दिखाई दे रहा है आगे की ओर चिड़िया दिखाई दे रही है मंदिर की दीवार ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है आगे की और जमीन खाली हुई दिखाई दे रही है।

खुला आसमान दिखाई दे रहा है और इस पर कुछ घोड़े पर सवार कुछ मुर्तियाँ दिखाई दे रही हैं ।

जिसके अंदर एक कांच का गेट दिखाई दे रहा है अंदर की ओर पर्दे दिखाई दे रही है अंदर की ओर एक व्हाइट कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है ।

बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे है ऊपर बिल्डिंग पर बल्ब जलती हुई दिखाई दे रहे है आगे की ओर --

आगे की और भी छोटी-छोटी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं और एक बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे डिब्बे दिखाई दे रही हैं बहुत सारी एन ए बॉटल्स दिखाई दे रहे हैं।

मैदान दिखाई दे रहा है आगे की ओर बहुत सारी खुली जमीन दिखाई दे रही है ये जो मंदिर की डिजाइने है वह बहुत ही --

कुछ लेंपस दिखाई दे रहे है।